हरा भरा पैड़ है नीचे कु केमरे अ रखे हुए हैं आसमान व्हाइट कलर मे है।

जो हरा कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और ब्लेक कलर का पेन्ट पहना हुआ है।

यहा कुछ लड़के है जो कुछ सामान ले जा रहे है बोहोत बड़ा फील्ड है उसमे घास लगा हुआ है हरी पैड है बिजली का खंबा गया हुआ है उसके ऊपर तार है।

ऊपर मे हरा पेड़ है एक बाइक खड़ी है पीछे व्हाइट आसमान है इसके दोनों तरफ बोर्ड लगा हुआ है।

यह बहुत बड़ा बगीचा है।

पीछे आसमान है जो नीला कलर है।

यहा एक मूर्ति बनाया गया है चारों तरफ घर है नीचे हड़ा भाड़ा घास है।